और दूध का दूध हो जाएगा पानी का पानी हो जाएगा जिसमें विशेषता होती है इसी विशेषता के --

हलाकी काम ही चावल के कर रहें हैं।

जम्मू जिला में काफी प्रचलित मंदिर --

क्या है ? ये तो सैलून लग रहा है बार्बर का सैलून । बढ़िया है बैठने का सोफा बढ़िया है और ये शीशा ग्लास तो और भी खूबसूरत --

फूलो-फूलों की लड़ियाँ माला गुलदस्ता बहुत ही खूबसूरत और ऊपर से वो वाइट लाइटिंग जो कर रहा है न एल.ई.डी. उससे और भी फूलों की खिला खिलखिलाहट --

यह नाइन टू नाइन यूनिसेक्स सैलून हेयर ब्यूटी एंड मेक-अप की और से तमाम छठव्रतियों एवं आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ। अच्छा ये शुभकामनाएँ दे रहा है बढ़िया है।

गजब तुमलोग देखने में गजब लग रहे हो बाबू।